अंदर देख सकते है काफी बड़ा-बड़ा-बड़ा घर दिखाई दे रहा होगा आपलोग जबरजस्त देख सकते है सब बिल्डिंग के ऊपर यहाँ पे--

देख सकते हैं यहाँ पे काफी सारे महंगे और देख सकते हैं यहाँ पे ठेला हैं और यहाँ पर बहोत सारे पिज्जा देता हैं चाट देता हैं चोमीन देता हैं।

हेलो देख सकते है यहाँ पे ये बच्चो लोग को यहाँ पे बैठा दिए हैं यहाँ पे ड्राइंग सीखा रहा है और ये टीचर है देख सकते है।

लग रहा हैं जबरदस्त दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को और काफ़ी मस्त देख सकते हैं यहाँ पे बहोत ही छोटे-छोटे प्यारे-प्यारे मछली हैं ताजे--